टीन की फैक्ट्री का है ये जगह--

पेड़-पौधा भी बहुत अच्छा-अच्छा दिख रहा है यहाँ पे न जाना पड़ेगा कभी घूमने-फिरने के लिए भी बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा है ये जगह भी और--